ग्राउंड दिखाई दे रहा है जहां पर काफी सारे लोग खेलते हुए नजर आ रहे हैं| क्रिकेट खेल रहे हैं वहां पर |

और वहां पर काफी सारे गमले नजर आ रहे हैं और उनमें पौधे नजर आ रहे हैं और वहां पे एक बैंक दिखाई दे रहा है एक वहां पे नजर आ रहे हैं।

बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जो छत के ऊपर है वो पिलर्स वहाँ पर फाउंडेशन के लिए रखा गया है। और--